यह एक आँगन लग रहे है आँगन में नाली में नजर आ रहा है नाली में एक लेडीज डूब गयी है और पेड़ भी लगा रही है लग रहा है और अगल बगल सब लेडीज जेट्स सब पेड़ पौधे लगा रहे है। और--

और बिल्डिंग के आस पास भी पेड़ हैं बिल्डिंग के घर के साइड में कुछ लड़का जाते हुए नजर आ रहा हैं।

यह एक रेस्टुरेंट जैसा लग रहा हैं यहाँ बहुत सारा लोग हैं बहुत सारे टेस्क लगे हुए हैं टेबुल लगे हुए बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं।

यह सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है और यह चौबीस घंटा खुला हुआ रहता है एटीएम और यहाँ मतलब बहुत पुराना मतलब बैंक लग रहा हैं।

यहां एक पार्लर है और पार्लर के बगल में भी एकदम दुकान है जहां पिज़्ज़ा जैसा और बर्गर जैसा कुछ पोस्टर लगा हुआ हैं।

यह एक किरणा स्टोर नजर आ रहा है यहाँ पे मतलब की कुरकुरे वगेरा ठंडा वगेरा बिस्कुट दुकान के उपर फैन लगा हुआ हैं।

यह रवि टायर रीपेरिंग सेण्टर हैं यहाँ कार का रेपेरिंग किया जाता हैं टायर भी मिलता है नया और टायर रिपेयरिंग सेण्टर बगल में दो इंसान खड़े हुए हैं।